कुछ है और पेड़ पौधे है बहोत ही सुंदर व्यू है।

यहां पर बहोत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई है।

यहां पर हमें वर्कर दिख रहे है घर बनाते हुए।

जिसने भी ये घर ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही सुंदर किया है टेबल सोफे --

स्टूल है प्लास्टिक सिस्टम बहोत अच्छा है लकड़ी का कैफे हैं वाव ।

व्यू सबसे अच्छा दिख रहा है।

यहां पर छोटी सी बच्ची--

और ये स्लाइड करती हुई नीचे आई है।

यहां पर हम देख सकते है।

यहां पर एक अंकल पराठे बना रहे हैं।

और ये पराठे बना रहे है पीछे वर्कर भी काम कर रहे हैं।

और यहां पर एक आंटी और उसकी बच्ची--

पर बहोत सारे लोग पान खाने आए हुए हैं।

घर के आगे छोटा सा गार्डन है।

इसकी खिड़कियां कलर सब कुछ बहोत अच्छे है।

जिससे वेट लॉस होता है या बॉडी --

खेलने आते है एक्सरसाइज करने आते है नगर निगम पार्क शिमला।

यहां पर पतंजलि टेस्टी नमकीन ढाबा--